यह एक अ जीसस च्राईस्ट क्रिस्चियन का मंदिर दिख रह हैं जा।

दो झाड़ काफी सारे झाड़ आजु बाजू दिख रहे हैं हरियाली वहां पे दिख रही है।

समझ नहीं आ रहे दो टेबल दिख रहे हे चार चेयर दिख रहे हैं।

ये एक लड़के की फोटो हैं जो की नदी किनारे बैठा हुआ हैं उस नदी के।

ओर नज़ारे का लुफ़त उठा रहा हे।

हाँ यह एक एयरटेल फोर जी की शॉप दिख रही हे वोड़ा फोन ।

और इन डब्बों पे स्टिकर पे लिखे हुए किस किस चीज का समान हे।

यह दो गधों की फोटो है।

ओर वहां पे एक पत्थर दिख रहा हुआ है जो कि एक सफेद कलर के।

उम्म उनके बॉक्सेस दिख रहे हैं बियर के बॉक्सेस दिख रहे हैं।

छत बनाई जा रही है छत का काम शुरू हैं जिसपे काफी सारे लेवर्स दिख रहे हैं।

ये एक तहसील कार्यालय है आम गाँव का दिख रहा है। जिसेमें दो --

काफी सारे लोगो की भीड़ वहां दिख रही है।

और वहाँ पे सूरज की रोशनी भी दिख रही है--

उजाला दो उजाले फोकस दिख रहा हुआ है और।

एक महीने में स गए और एक महीने में--

वाइट कलर का कमरा दिख रहा है जिसमें--

तीन बैठने के टेबल दिख रहे हैं डंबो --

ये एक शॉप दिख रही है जिसमे।

के गोल टेबल दिख रहे वह पे दो व्यक्ति दिख रहे हैं एक काले कलर में।

दिख रहा है जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है--

एक दुकान दिख रही है जिसमें एक--

सारे फव्वारे दिख रहे हैं आजु बाजू झाड़ दिख रहे हैं काफी सारे लोग दिख रहे हैं लेडीज भी दिख रही हैं।

काफी लोग बेठ के शो देख रहे हैं वहां पे साउन्ड बोक्सेस भी लगे हुए हैं।

और वहां पे एक बैठने के लिए एक टेबल भी दिख रहा हैं सामने रोड दिख रहा हुआ हैं।

पढ़ने के लिए आए हुए हैं नीचे में टाइल्स लगी हुई है नीचे में मार्बल लगा हुआ है वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।